इ इस आदमी के शर्ट का कलर व्हाइट और ब्राउन भी शर्ट दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें बहोत सारी कुर्सियां--

आदमी दिखाई दे रहे हैं।

बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं।

सोफे और एक टेबल दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा गैरेज टाइप कुछ दिख रहा है और एक बोरिंग --

और एक आदमी और एक लड़की एक पर्स सहित दिख रही हैं।

इस चित्र में हमें लाल कलर के चेयर पर तीन लोग बैठे हुए--

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है।

एक चेयर भी दिख रही है जो रेड कलर की है।

इस चित्र में हमें कुछ रंग बिरंगी मूर्तियाँ--